पढ़ने के लिए जा रहे हैं बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं नवाज पढ़ने के लिए --

डॉक्टर का नाम एम.एस.ए. नाम --

ये कोई अच्छा सा दृश्य दिखाई पड़ रहा है यह लगता है की पहाड़ियों इलाका का दृश्य है बहोत सारे पेड़-पौधा --